इस तस्वीर में मस्जिद का गेट जालीदार एवं काले रंग का है बाहर--

मिया बीबी ने झूला पकड़ा हुआ है पास में एक रिक्शा भी खड़ा--

इस तस्वीर में एक आइस क्रीम की दुकान नजर आ रही है।

प्रचलित है स्कूल के सामने एक हरा भरा बगीचा भी नजर आ रहा है।

लकड़ी का रखा हुआ है सोफे के सामने एक लकड़ी का मेज जिसके ऊपर कांच का शीशा लगा हुआ है और उसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

यह तस्वीर एक इमारत की है जहां पे बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है और कुछ बड़े बड़े खंभे भी दिखाई दे रहे है।

मंदिर के बाहर कुछ रंग बिरंगी झंडिया --

बेड शानदार नजर आ रहा है जिसको बहोत सुंदर तरीके से सजाया गया है।

के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उस मेज में पौधे भी दिख रहे हैं।

रोड पर चल पैदल चलने वालों के लिए अलग रस्ता भी बनाया गया है।

यहां पर कुछ बिजली की तारे भी नजर आ रही है ऊपर आसमान से पता चलता है कि यह शाम की तस्वीर है।

यहां पे हरे-हरे रंग की कुछ जालियां भी दिखाई दे रही है।

टायरों के ऊपर एक टीन नजर आ रही है जो कि लोहे की--

मोटी मोटी रॉड के सहारे खड़ी की गई है।

ढका गया है ताकि उनसे छाया बनी रहे।

पर प्लास्टिक एवं लकड़ी का काम किया हुआ है और वहां पे चौरस--